ये बैठे हुए है और लिखते कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे है।

एक मिठाई की दुकान है जिसमें अनमोल नाम के पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में कुछ मिठाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं।

जिससे दुकान का जो लुक है।

पैंट के जरिए एक पेंटिंग बनाया गया है।